इस छाया चित्र में महिलाओं बालिकाओं और पुरुषों को एक विशेष आसन करते हुए दिखाया गया है।

और इसमें मंदिर का एक ऊपरी हिस्सा भी दिखाया गया है।

इस छायाचित्र में एक मकान दिखाया गया है इसमें बाई ओर दो दो पहिया वाहन खड़े नजर आ रहा है।

इस छाया चित्र में एक औरतों के समूह को दिखाया गया है।

इस छायाचित्र में दो मिष्ठान को दिखाया गया है।